जैसे बने हुए हैं और--

मैकेनिक की दुकान का लग रहा है जहां पर बाइक रखी गई है और इसको ठीक करने के--

औजार भी दिखाई दे रहे हैं टेबल भी दिखाई दे रहा हैं बैठने के लिए--

चार खिड़कियां दिखाई दे रही है बाहर एक बड़ी बाल्टी और छोटी बाल्टी दिखाई दे रही है।

और ईयरिंग भी है यह एक लेडीज की अ सामान की शॉप लग रही है।

ये दृश्य एक पार्क के जैसा दिखाई दे रहा है और पेड़ दिखाई दे रहे हैंपेड़ पे कुछ--

इसमें कुर्सियां और सोफे लगे हुए ऊपर छत में पंखे लगे हुए हैंऔर --

लाइटें जली हुई दिखाई दे रही है।

ये दृश्य किसी ए कॉलेज का प्रतीत हो रहा है और --

लोग एकत्रित हुए हैं और बीच में--

चेजा दिखाई दे रहा हैं और इसके--

गाड़ी नजर आ रहे घर नजर आ रहे है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं और सामने नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

पर कुछ लोग बैठे हैं और पंडित--

इस पिक्चर में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जिनके हाथ में--

ये मुझे किसी ज्वेलरी की शॉप दिखाई दे रही है और--

ये लोग उन्हें ज्वेलरी दिखा रहे है ये--

यह चेयरे वगैरा बनाई जाती है।

यह दृश्य मुझे एक शोरूम सा प्रतीत होता है जिसमें पता लग रहा है कि यहां पर लाइटिंग --

कुछ लोग खड़े हैं और बॉक्सेस बने हुए और साइड में शूज जैसे दिखाई दे रहे हैं।

घर दिखाई दे रहे हैं और ये --

ये कुछ ऐसा लग रहा है ये ऑफिस की तरह है।

ये दृश्य मुझे किसी स्विमिंग पूल का दिखाई दे रहा है यहां पर एक स्टैचू के जैसा बना हुआ है।